यहा एक गाय दिखाई दे रही है जो हरे कलर की रस्सी से बंधी हुई है और उसके सामने भूसा रखा हुआ है पीछे की और बहुत से झोले वगैरा भी रखे हुए दिखाई दे रहे है।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

और एक तगारी भी दिख रही है एक पंखा दिख रहा है।

यहा एक बो ट्रेक्टर और ट्रॉली दिख रही है ट्रॉली मै एक बाबाजी बैठे हुए दिख रहे है और उनके पीछे एक बड़ी सी फोटो लगी हुई दिख रही है।